अह व्हाइट कलर और पेंट सलवार का कलर है नीला और दुपट्टा नीला है।

अनीशका नाम है ए_एन_आई_एस_एच_के_ए --